सामने एक नीले कलर की दुकान बनी हुई है जिस पर पैन अमेरिका ट्राउजर जींस लिखा हुआ है।

बस एक बोर्ड है जिसपे आर.डी.एस. कोचिंग सेंटर लिखा हुआ है फॉर स्टडी एन.सी. एंड ट्वेल्व ।

एक बड़ा सा गेट बना हुआ है जो की ब्लू और अ पिंक परदों से सजा हुआ है और कुछ फूलों से सजा हुआ है।

उसमें कुछ दा अ तराई लगी हुई है और नीचे मैदान है जो कुछ खाली मिट्टी डली हुई है सामने कुछ अ सामने कुछ घास रूस डली हुई है नी--

और छत है वो तार निकला हुआ है और नवोदय के तरह हर तरह की तैयारी कराइ जाती है।